इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

यह एक मज्जिद है मज्जिद के पीछे पेड़ दिखाई दे रहें हैं मकान बने हुएं हैं और --

मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहे है और यहाँ मकान भी बने हुए है और मंदिर के आसपास बॉउन्ड्री बनी हुई है।

इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे फल फ्रूट रखे हुए है केले जामफल सेवफलअनार --

और यहाँ एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड के ऊपर अ--

इसमे तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे है जो की दो व्यक्ति खड़े है एक व्यक्ति जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे--

यहाँ एक अ हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के ऊपर बड़े अक्षरों मे हॉस्पिटाल का नाम लिखा हुआ है। हॉस्पिटल के सामने--

और यहाँ पर तस्वीर भी दी र रखी हुई है उनकी।